हमें दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में नीला एक अ चादर वाला शेड बना हुआ है और एक ट्रक खड़ा हुआ है।

ए अआदमी लड़के दो बैठे हुए हैं एक का चेहरा छुपा है एक के चेहरे पर मास्क लगा हुआ है।

हमें इस तस्वीर के अंदर एक आदमी पीछे की तरफ खड़ा दिखाई दे रहा है।

बड़ा सा एक मकान हमें इस तस्वीर में बना हुआ नजर आ रहा है उसके अंदर हम--

और हमें दूर एक बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही है लाल रंग की।

लोग हमें खड़े और बैठे नजर आ रहे हैं।

दुकान के अंदर और दुकान के बाहर भी हमे सामान रखा दिखाई दे रहा है।

हमें तस्वीर के अंदर कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं बहुत सारी।

हमें इस तस्वीर में नीला आसमान और हमें ताल नजर आ रहे हैं बिजली के बहोत सारे--

साड़ी पहनी हुई है और दीवारें हमें सफेद गुलाबी भी दिखाई दे रही है पेंट की हुई।

एक आदमी भी ऊपर हमें खड़ा दिखाई दे रहा है लाइट जल रही है।

और हमें सड़क में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

गाड़ियां हमें खड़ी दिखाई दे रही है इस तस्वीर में और लोग हमें दिखाई दे रहे हैं।

इसतस्वीर के अंदर हमें दिखाई दे रहा है अ तागीर मस्जिद मदार डोंगनी लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें बोर्ड पर।

और हमें सफेद सी अंदर बड़ी सी दिखाई दे रही है बिल्डिंग बनी है।

जोशी मांगलिक भवन लिखा हुआ नजर आ रहा है बोर्ड पर।

इसके अंदर हमें अ दरवाजे खिड़की बने हुए नजर आ रहे हैं।

हरी हरी घास पत्थर और बड़े-बड़े पेड़ हमें लगे हुए नजर आ रहे हैं हरे हरे।

हरे-हरे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं हमें और दोनों तरफ और बीच में हमें एक पुल सा दिखाई दे रहा है लोहे का।

हमें इस तस्वीर के अंदर एक दीवार पर बड़ा सा पोस्टर दिखाई दे रहा है एक लड़की का।

मैदान में एक तरफ हमें जाली लगी हुई दिखाई दे रही है नेट लगी हुई है वहां भी लोग खड़े हैं।